रिडाइरेक्शन और pipes के बारे में इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
मैं उबंटु 1004 का उपयोग कर रही हूँ
हम यह मानते हैं कि आपको पहले से ही लिनक्स operating system के बारे में जानकारी है और commands के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है
यदि आप इच्छुक हैं तो निम्नलिखित website पर यह दूसरे spoken tutorial के माध्यम से उपलब्ध है
यह भी ध्यान रहे कि लिनक्स case sensitive है
इस tutorial में उपयोगित सभी commands lower case अन्यथा कथित हैं
लिनक्स में अधिकांश कार्य हम terminal के माध्यम से करते है
जब हम command का निष्पादन करते हैं हम साधारणतः keyboard से type करते हैं
मानिए कि हमें say और दिनाँक पता करनी है
हम केवल keyboard से डेट type करते हैं और enter दबाते हैं
अतः हम साधारणतः keyboard से input देते हैं
उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी command का output terminal window पर भी प्रदर्शित होता है
यह भी मानिए कि जब हम किसी command को निष्पादित करते हैं कुछ error भी आते हैं
उदाहऱणस्वरूप हम cat space एएए cat space aaa टाइप करते हैं और enter दबाते हैं
aaa एएए name से कोई भी file मौजूद नहीं है
अतः वहाँ एक error प्रदर्शित होती है
अब यह error terminal window पर भी आती है इसलिए हम error reporting terminal पर भी देखते हैं
अब inputting outputting और error reporting commands से संबंधित तीन विशेष कार्य हैं
रिडाइरेक्शन के बारे में खीखने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण सिद्धातों के बारे में जानना चाहिए जो है stream और file descriptor विवरणक
लिनक्स shell जैसे के bash input को ग्रहण करता है और अनुक्रम के रूप या अक्षरों की streams में output भेजता है
प्रत्येक अक्षर इसके एक पहले या इसके एक बाद से स्वतंत्र होता है
streams तक file io techniques का उपयोग करके पहुंचा जाता हैं
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षरों की वास्तविक stream file से आती है या file में जाती है या keyboard window आदि से आती है
लिनक्स में प्रक्रिया की प्रत्येक open खुली file एक पूर्णांक संख्या के साथ संयुक्त होती है
इस सांख्यिक values को file डिस्क्रीप्टर विवरणक के रूप में जाना जाता है
लिनक्स shells तीन standard आईओ i/o streams का उपयोग करते हैं
इनमें से प्रत्येक सुपरिचित file descriptor विवरणक के साथ संयुक्त होता है
एसटीडीआईएन stdin standard input stream है
यह commands को input उपलब्ध कराता है
यहाँ file descriptor विवरणक शून्य 0 है
stdout standard output stream है
यह commands से output प्रदर्शित करता है इसके पास file descriptor विवरणक वन 1 है
एसटीडीइआरआर stderr standard error stream है यह error output commands से प्रदर्शित करता है यहाँ file descriptor विवरणक टू 2 है
input streams programs को input उपलब्ध करता है
स्वतः से यह terminal keystrokes से लेता है
output streams terminal पर स्वतः से text अक्षरों को print करता है
terminal पहले एक ascii टाइपराइटर या display terminal था
लेकिन अब graphical desktop पर एक text window है
हमने देखा कि स्वतः से 3 streams कुछ फाइलों से जुड़ें हैं
लेकिन लिनक्स में हम इस स्वतः व्यवहार को बदल सकते हैं
हम इन 3 streams को अन्य फाइलों से जोड़ सकते हैं
इस प्रक्रिया को रिडाइरेक्शन कहते हैं
अब देखते है कि 3 streams में रिडाइरेक्शन कैसे होता है
पहले देखते हैं कि standard input कैसे रिडाइरेक्ट होता है
हम <left ऐंगअल bracket operator का उपयोग करके file से स्टैन्डर्डएन stdin को redirect करेंगे देखते है कैसे
हम जानते हैं कि डब्ल्यू we wc command का उपयोग file में अक्षरों शब्दों और रेखाओं की संख्या जानने के लिए किया जाता है
terminal window पर डब्ल्यू सी wc type करें
अब एंटर दबायें
क्या होता है हम ब्लिंगकिंग कर्सर पायेंगे इसका मतलब है कि हमें कीबोर्ड से एंटर करने की जरूरत है
कुछ text enter करें this tutorial is very important यह tutorial बहुत महत्वपूर्ण है
अब enter दबायें
अब ctrl और d की साथ में दबायें
अब command उन रेखाओं पर कार्य करेगी जिन्हें हमने प्रविष्ट किया है
command terminal पर एक output देगी
अब यहाँ डब्ल्यूसी wc command के बाद कोई भी file नहीं दी गयी है
तो यह standard input stream से input लेगा
अब standard input stream स्वतः से keyboard से जुड़ जाती है इसलिए डब्ल्यूसी wc keyboard से input लेगा
अब यदि हम डब्ल्यूसी space left हैंडेड bracket space test1 dot टीएक्सटी wc space leftangled bracket space test1 dot txt लिखते हैं
क्या होता है कि डब्ल्यूसी हमें फाइल test1 टीएक्सटी में अक्षरों शब्दों और रेखाओं की संख्या बतायेगा
अब डब्ल्यूसी space test1 dot टीएक्सटी wc space test1 dot txt type करें
हमें समान परिणाम दिखता है
अतः फर्क क्या है
जब हम डब्ल्यूसी space test1 dot टीएक्सटी लिखते हैं command file test1 dot टीएक्सटी को खोलती और उससे reads पढ़ती करती है
लेकिन जब हम डब्ल्यूसी space left ऐंगगल bracket space test1 dot टीएक्सटी wc space leftangled bracket test1 txt लिखते हैं डब्ल्यूसी तब भी किसी file को नहीं खोलता है
इसके बजाय स्टैन्डर्डइन stdin से input लेने लगता है
अब हम स्टैन्डर्डइन को file test1 dot टीएक्सटी में निर्देशित करते हैं
अतः command test1 से reads पढ़ती करती है
लेकिन वास्तव में पता नहीं है कि स्टैन्डर्डइन stdin में data कहाँ से as रहा है
अतः हमने देखा कि standard input को कैसे redirect करते हैं
अब देखते हैं कि standard output और standard error को कैसे redirect करें
यहाँ file के लिए output या error को redirect करने के दो मार्ग हैं
मान लीजिए एन file descriptor को संदर्भित करता है n> नरेशनएन सिंगल राइटएंगल्ड ब्रेकेट file descriptor एन से file तक आउटपुट रिडाइरेक्ट करता है
आपको file को लिखने का अधिकार होना चाहिए
यदि file मौजूद नहीं है तो बनाई जाती है
यदि यह मौजूद है तो बिना किसी सूचना के मौजूद विषयवस्तुएँ सधारणतः लुप्त हो जाती हैं
एन double rightangled bracket भी file के लिए file descriptor एन से output redirects करता है
फिर से आपको file को लिखने का अधिकार होना चाहिए
यदि file मौजूद नहीं है यह बनाई जाती है
यदि यह मौजूद है तो output मौजूदा file से संलग्न होता है
एन single rightangle bracket या एन double rightangle bracket में एन file descriptor को संदर्भित करता है
यदि इसे हटा देते है तो standard output file डिस्क्रीप्टर1 माना जाता है
इसलिए> rightangle bracket 1> के समांतर है
लेकिन error stream को redirect करने के लिए आपको 2> या 2>> का उपयोग करना पड़ेगा
अब इसे व्यावहारिक रूप में देखते हैं
पिछले उदाहरण में हमने देखा कि file या standardin stdin में डब्ल्यूसी command का परिणाम terminal window पर प्रदर्शित होता है
क्या होगा यदि हम इसे terminal पर प्रदर्शित नहीं करना चाहते
हम इसे file में store करना चाहते हैं ताकि जानकारी बाद में इस्तेमाल की जा सके
स्वतः से डब्ल्यूसी अपना output standardout आउट stdout में लिखता है
स्वतः से standardout आउट stdout terminal window से जुड़ा होता है
इसलिए हम output को terminal में देखते हैं
लेकिन यदि हम standardout आउट stdout को file में redirect कर सके तो डब्ल्यूसी command से output को उस file में लिखा जायेगा
मानिए कि हम डब्ल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डोट टीएक्सटी writeएंगल्ड ब्रेकेट डब्ल्यूसी रिजल्ट डोट टीएक्सटी wc space test1 dot txt rightangled bracket wc _ results dot txt लिखें
और enter दबायें
अब देखें कि क्या यह वास्तव में हुआ हम wc _ results डब्ल्यूसी _ रिजल्ट dot टीएक्सटी की विषयवस्तु को केट command के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं
हाँ यह हुआ
मानिए कि हमारे पास उसी डाइरेक्टरी में टेस्ट2 अन्य फाइल है
अब हम फिर से test2 file के साथ command निष्पादित करते हैं हम डब्ल्यूसी स्पेस test2 डोट टीएक्सटी राइटएंगल्ड ब्रेकेट डब्ल्यूसी _ रिजल्ट डोट टीएक्सटी wc space test2 dot txt rightangled bracket wc _ results dot txt type करते हैं
अतः डब्ल्यूसी रिजल्ट file की विषयवस्तु अधिलेखित हो जायेगी
चलो देखते हैं
इसके बजाय यदि हम डब्ल्यूसी space test1 dot टीएक्सटी writeangled bracket twice डब्ल्यूसी _ रिजल्ट dot टीएक्सटी wc space test1 txt rightangled bracket twice wc _ results txt चलायें
तो नई विषयवस्तु डब्ल्यूसी _ रिजल्ट dot टीएक्सटी wc _ results txt फाइल की पहले से उपस्थित विषयवस्तु में अधिलेखित नहीं होगी यह संलग्न हो जायेगी
चलिए इसे भी देखते है
standard error रिडाइरेक्ट करना उसी तरह होता है
केवल फर्क यह है कि इस मामले में हमें> या>> चिन्ह के पहले स्टैंडर्डएर्रर stderr के file descriptor की संख्या को उल्लेख करने की आवश्यकता होती है
जैसे हम जानते हैं कि aaa name की कोई file मौजूद नहीं है aaa लिखें
सेल error देगा no such file or directory ऐसी कोई फाइल या निर्देशिका नहीं है
अब मानिए कि हम screen पर error messages नहीं चाहते now किसी अन्य file में रिडाइरेक्ट कर सकते हैं
इसके लिए हम डब्ल्यूसी space aaa aaa aaa space 2 rightएंगल्ड bracket errorlog dot टीएक्सटी wc space aaa space 2 rightanged bracket errorlog txt command दे सकते हैं
अब error terminal पर नहीं दिखेगी बल्कि यह फाइल errorlog dot टीएक्सटी file errorlog txt में लिखी होगी
हम यह केट space errorlog dot टीएक्सटी cat space errorlog dot txt command से देख सकते हैं
अब मानिए कि केट स्पेस bbb स्पेस2 राइटएंगल्ड ब्रेकेट एररलोग डोट टीएक्सटी cat space bbb space 2 rightangled bracket errorlog txt यह command now करके मैं कोई अन्य error करती हूँ
तो कमांड चलाने से पिछली error अधिलेखित हो जायेगी और नई error दिखाई देगी
देखिए केट space errorlog dot टीएक्सटी cat space errorlog dot txt
लेकिन क्या यदि हम सभी एररों की सूची चाहते हैं इसके लिए हम यह कमांड चलाएंगे डब्ल्यूसी स्पेस एएए स्पेस 2 राइटएंगल्ड ब्रेकेट एररलोग डोट टीएक्सटी wc space aaa space 2 rightangled bracket twice errorlog txt
हम इसे cat command का उपयोग करके जाँचते हैं
हमने देखा कि कैसे standard out standard एन standard error तीनों streams अलग से रिडाइरेक्ट और कुशलतापूर्वक प्रयोग होती हैं लेकिन इस तथ्य की वास्तविक शक्ति का अनुमान तब लगा सकते हैं जब हम streams का साथ में कुशलतापूर्वक उपयोग करें we है भिन्न streams को जोड़ना
इस प्रक्रिया को pipelining कहते हैं
pipes का उपयोग commands की श्रृंखला बनाने के लिए करते हैं
pipe श्रृंखला में एक command के output को दूसरी command के input से जोड़ता है
यह इस तरह दिखता है
मानिए कि हम वर्तमान directories निर्देशिका में उपस्थित directories निर्देशिकाओं और फाइलों की संपूर्ण संख्या जानना चाहते हैं
हम क्या कर सकते हैं हम जानते हैं कि एल एस स्पेस माइनस एल ls space minus l वर्तमान डाइरेक्टरी की सभी फाइलों और डाइरेक्टरिस निर्देशिकाओं की सूची बनाएगा
हम एक file एल एस स्पेस माइनस एल राइटएंगल्ड ब्रेकेट file डोट टीएक्सटी ls space minus l rightangled bracket files txt के लिए output redirect कर सकते हैं
केट space files dot टीएक्सटी cat space files dot txt चलाएँ
अब प्रत्येक line file और directory के name से है
इसलिए यदि हम इस file में संपूर्ण लाइनों को मापते हैं हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए files dot टीएक्सटी files txt का उपयोग कर सकते हैं
इसको हम डब्ल्यूसी space माइनस एल files dot टीएक्सटी wc space minus l files dot txt command का उपयोग करके कर सकते हैं
हालाँकि यह हमारे उद्देश्य को पूरा करता है पर वहाँ कुछ परेशानियाँ हैं
पहले हमें एक मध्यवर्ती file files dot टीएक्सटी चाहिए
यदि पहली command अधिक data प्रस्तुत करती है तो यह व्यर्थ में disk memory नष्ट कर या कम कर सकती है
यदि हम कई commands की श्रृंखला बनाना भी चाहते हैं यह पद्धति धीमी है
हम इसे pipes का उपयोग करके काफी आसान कर सकते हैं हम एल एस स्पेस माइनस एल वर्टीकल बार डब्ल्यूसी स्पेस माइनस एल ls space minus l vertical bar wc space minus l लिखते हैं
और हम अधिक सहूलियत के साथ वही परिणाम पा सकते हैं
एल एस command से output डब्ल्यूसी command के लिए input के रूप में जाता है
हम pipes का उपयोग करके commands की लम्बी श्रृंखलाएँ भी जोड़ सकते हैं
pipes का एक सामान्य उपयोग multipage displays प्रदर्शन पढ़ने के लिए किया जाता है
सीडी space/यूज़र/bin cd space/usr/bin टाइप करें
अब हम bin directory में हैं
अब एल एसएल चलाएँ
हम output को सही से नहीं देख सकते लेकिन यदि हम इसे अधिकता के लिए pipe से जोडें हम कर सकते हैं
सूची के माध्यम से scroll करने के लिए enter दबायें
इससे बाहर आने के लिए क्यू दबायें
यह कुछ commands थे जो हमें files में काम करने के लिए मदद करती हैं
कई अधिक commands हैं
हमने देखा के इसके अलावा प्रत्येक commands जिसके कई अन्य पर्याय options है
man command का उपयोग करके उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ
commands को सीखने का सही तरीका है उनका बारबार उपयोग करना
यह मुझे इस tutorial की समाप्ति की ओर लाता है
spoken tutorials talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा mission ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस पर अधिक जानकारी हमारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है
यह script देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना अब आप से विदा लेती हूँ